इधर में सस्ते दामों पर मिलता है।

यहाँ एक जिम है। जहाँ पर जिम कास बोहोत सारा सामान रखा हुआ हैं। इधर पर लोग जिम करने आये हैं जो जिम शीशे में देख देख कर जिम कर रहे हैं।

इधर पर आधार कार्ड भी सही होता है। इधर पर आधार कार्ड का भी अपडेट हो जाता है। इधर पर बैंक का खाता भी खुलता है।

यह एक आईसीआईसीआई बैंक है जो एक एटीएम है जहाँ पर एटीएम भी खुला है कई --

यह भी एक गेस्ट हाउस है यहाँ पर शादी हो गयी है जिसकी बिदाई होने के बाद इधर --

यह एक गाडियों कि और फेज़ेजो कुर्सी फर्नीचर कि एजेंसी है। जहाँ पर गाडियाँ भी मिलती है स्कूटी मोटरसाइकिल और इधर पर --

और जाली के पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों के बगल में एक घर भी है और घर के पास ही पेड़ लगे हुए --